अनुभवी अ कारीगरो के द्वारा--

यहाँ से आप इलेक्ट्रानिक्स पंखा बल्ब इलेक्ट्रानिक्स फ्रिज टीवी ये सब आदि खरीद सकते हैं जो की उचित मूल्य पें--

ये स्कूल है और यहाँ पे बच्चे योग कर रहे है पीले रंग की--

और बड़ा सा फील्ड है यहाँ पे लोग क्रिकेट खेलने आते है।

जहाँ एक कमरे का दृश्य है ये अअ बेड है उसके ऊपर दो तकिया रखा हुआ है।

और एक व्यक्ति हैं जो की खड़े हैं और एक व्यक्ति हैं वो बैठे हैं।

और कई सारे डेस्क और बेंच रखे हुए है जिसपे बच्चे लोग बैठ के पढ़ाई करते है।